जैसा की हम देख पा रहे है ये एक पेट्रोल पम्प का चित्र है पेट्रोल पम्प पे काफ़ी भीड़ लगी हुई है यहाँपे काफ़ी सारे लोग पेट्रोल भरवाने आये हुए है यहाँपे हम --

जैसा कि में देख पा रही हूँ यह किसी दुकान का चित्र है यह दुकान की अंदर काफ़ी सारे डिबिया रखी हुई है डिबी के अंदर अलग अलग चीज़ें रखी हुई है यहाँपे --

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहां पे सामने हमें नदी जैसा कुछ दिखाई दे रहा है नदी का जो पानी है हमें नीले कलर का दिखाई दे रहा है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहां पे हमें दिन का समय दिखाई दे रहा है सामने हमें बेस्ट रेसिडेंसी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

हाथी ने सर पर बहुत सारे कुमकुम से टीका लगाया हुआ है यहां पे काफी सारे लोग है हाथी पर पानी लगा रहे हैं।

उस आदमी ने व्हाइट कलर की टी शर्ट और वाइट कलर के शॉर्ट्स पहने हुए हैं।

जैसे कि में देख पा रही हूँ यह किसी मॉल का चित्र है मॉल काफ़ी बड़ा लग रहा है मॉल की सामने हमे ढेर सारे सीड़िया भी लगी हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे--

जैसे कि मैं देख पा रही हूं यहां पे तीन लोग जिम करते हुए दिखाई दे रहे हैं तीनों लोग ने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं।